ये एक मार्केट की तस्‍वीर हैं।

और उस पेट्रोल पंप पर एक पेट्रोल टेंक खड़ा नजर आ रहा हैं।

इस पिक्‍चर में हम देख सकते है कुछ हिरण हैं।

लग रहा है और कुछ लोग भी आसपास खड़े हुए है कुछ पर्यटक है जोकि इन बतखो को और यहां कि --

कोई एक्टिविटी कम्‍पलीट कर रहे है जैसे कि कोई गेम या फिर कोई रश्‍म बगैरह और यहां पर बहुत सारे लोग है और यहां पर गर्ल्‍स लेडीज --

सारी रंग बिरंगी गाडि़या खड़ी हुई हैं।